कुछ लोग रोड के किनारे सब्जियां बेच रहे हैं।

थोड़ी टूटी हुई दीवाल दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मकानों का दृश्य नजर आ रहा है।

दिवालो पर सफेद और नीले रंग से पेंट किया गया है एक तो पूरे क्रीम कलर से रंगा गया है।

कई छोटे बड़े पत्थर है।

कुछ लोग बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर अनोखे मछली नजर आ रहे हैं।

बिसनेस नाम का एक दुकान दिख रहा है थोड़े बहुत पौधे भी लगे हुए हैं।

दीवाल पे उर्दू में लिखा हुआ है।

बड़े अक्षरों में पिज्जा हट दिखाई दे रहा है और पीछे के_एफ_सी नजर आ रहा है।

यह एक होटल का रूम का दृश्य लग रहा है।

यह किसी शहर का एक लकड़ी का नमूना लग रहा है।

कई सारे लोहे के रोड्स भी दिख रहे हैं।

यहां पर हम बोरी भर कर राशन देख सकते हैं एक युवक बैठा हुआ नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा फ्रिज बहुत सारे वाशिंग मशीन और कुछ रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहे हैं।